में से एक कुछ यहां ब लड़कियां कुछ ड्रेस पहन के नृत्य करती हुई नजर आ रही है।

ये कोई बहुत बड़ा विला का फोटो है।

दो व्यक्ति है जो इस पर जा रहा हैं जो एक पिला टी शर्ट और ब्लैक टी श शर्ट पहना हुआ है।

यह एक एयरपोयट का फोटो है।

पुतले हैं यहां रखें जो बजा रहे हैं जैसे देखने को है।

बहुत सारी सामान है बिस्किट वगैरा डेस्क में रखी गई है।

यह एक कोई जिम का फोटो है जिसमें से एक पोस्टर आगे में लगाया गया है।

यह एक कोई मंदिर का फोटो है जिसमें से आगे में यहां बहुत भीड़ है।

इसके आगे में दो गेट है जिसमें सटर लगाया गया है जो नीले कलर का है ।

इस पर लिखा गया है कोको कोला मां दुर्गा वेली ढाबा--

इधर एक लोहे की खंबे में एक ऐरो का चिन्ह भी बना है।

यह एक घर के सजावट के लिए सजावट बहुत सारी की गई है।

इसमें से आगे में दो व्यक्ति भी खड़े हैं।

ऊपर में सजावट के लिए बहुत सारी बलूंस भी लगाई गई हैजो बहुत ही सब कलर के हैं।